यहाँ एक रोड दिखाई दे रही है जिस मे नीचे कोई कचरा फैला हुआ है सामने एक व्यक्ति है जो --

इनके हाथ मे कुछ सामग्रीः है जिससे यह कोई एक्टिविटी कर रहे है।